जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक मछली बाजार है। जहां पर बहुत ही तादार पर मछली उपलबंध है। यहां पर हर तरह की मछली बिकी जा रही है। जहां तक देखी जा रही है। यहां पर बहुत ही सारे मछली है। सारा मछली ताजा मछली है|

यहां पे हर तरह की सुविधा उपलब्ध है यहां पे गाड़ी को ऊपर उठा के अच्छे से साफ किया जाता है इ --

ये शादी का पिक्चर है जो शादी में लिए जा रहे हैं यहाँ पे लड़का-लड़की आराम से फोटो क्लिक करवा रहे हैं जो शादी किए हुए हैं दोनों कोई ड्रोन से यहाँ पर कैमरा वीडियो हो रहा है।

यहाँ पे अच्छे से बाल काटे जाते हैं यहाँ पे बहुत ही मतलब फैसिलिटी अच्छी दी गई है यहाँ पे आराम से बैठ के बाल कटवा सकते हैं चारों पट्टी ऐना लगाए हैं इसके यहाँ पे स्टाफ भी यहाँ पे है जो कि अच्छे से सेवा --

यहाँ पे बहुत ही अच्छे बाल काटे जाते हैं उसका चार्ज भी कुछ ज्यादा ही लगता है इसलिए यहाँ पर बहुत ही सुख-सुविधा दी जा रही है ।

जैसे कि आप देख सकते हैं ये दुर्गा मां की मूर्ति है इसे विसर्जन करने के लिए ले जाया जा रहा है जिसके कारण यहाँ बहुत ही भारी मात्रा में भीड़ हुई है सभी जा रहे हैं इसे विसर्जन करने के लिए पूजा हो गया है।

यहाँ वहाँ बहुत ही जगह घुमाया गया है इसे और इसे सीधे जा रहे है विसर्जन करने के लिए इसलिए यहाँ पे भीड़ भी अधिक मात्रा में दिखाई दे रही है जिससे की यहाँ पे ब --